यह तस्वीर एक मैदान की है जिस मैदान में हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

सामने बहोत सारी गाड़ियां भी लगी हुई है।

सामने एक सफेद और नीले रंग का पोस्टर भी लगा हुआ है।

जिसका रंग व्हाइट और गोल्डन है।

यहां पर कुछ लोग भी हैं यहां नीचे टाइल्स भी लगा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे लोग भी खड़े हैं।

यहां पे बहोत सारा बैलून भी लगा हुआ है जीसका रंग व्हाइट और ब्लू है।

यहां पर अगल बगल सफेद रंग की दीवार भी है।

यह तस्वीर एक गार्डन की है जहां पे बहोत सारे अलग अलग तरह के पौधे भी है।